जो बहुत ही सुन्‍दर है और इसका पूरा काम बहुत ही बारीकी से किया गया है इसके डिजाईन्‍स जो हैं।

इस वीडियो में ये दिख रहा है कि वहां पे एक फेडरल बैंक का ए.टाी.एम. है जो ब्‍लू कलर से हैं और --

झाड़े हैं सामने में एक बोरी गिरी हुई है जिसमें कुछ मिट्टियां भरी हुई है।